कि मैं देख पा रही हूं ये एक कोचिंग सेंटर है।

इसमें बहोत से फ्रैंड लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं।

पथरीला इलाका है पथरीले इलाकों में--

एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ई सी ई ई ई।

उनके आगे एक आदमी है आदमी पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है एक जैकेट पहना हुआ है उसके हाथ में एक थैला है।

पानी की पाइप गई हुई है उसमें छोटे-छोटे पेड़ भी है कुछ पत्ते नजर आ रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का वक्त है।

और यहां पे दो लोग खड़े हैं दोनों ने अलग अलग कलर के हेलमेट पहने एक ने व्हाइट पहना है एक ने ब्लू पहना है एक मशीन है।

हूदीस पहना हुआ है जींस पहना हुआ है।

इसमें बहुत सारी खिड़की है दरवाजे है ऐसी का कनेक्शन है आगे डस्टबिन है।